खूब बढ़िया बा। खूब जादू लागल बा। खू खूब जुत्ता पहीनले बा। टोपी लगाइले बा लाल के खूब फूल लागल बा खूब झकास झकास बा खूब --